कारपेट भी बिछा हुआ है एक आगे जूता भी पड़ा हुआ है एक सफेद रंग का जूता और एक भूरे रंग का जू --

जबकि कारपीट वहाँ पर लाल रंग का है सिर्फ एक बच्चा खड़ा हुआ है ऑडिटोरियम में बहोत सारी तस्वीरें भी लगाई गई हैं।

ये एक इमारत दिखाई गई है जोकि काफी खूबसूरत सी लग रही है शीशे का काम बहोत--

नीचे से नाप दुकानें मौजूद हैं जिसमें कुछ कुछ नजर आ रहा है कोई बच्चों के दुकान है बच्चों के कपड़ों की दुकान हैं और एक तरफ --

ये एक रोड की तस्वीर हैं जो आगे से शादी हॉल लग रहा हैं।

जीन्स पहने वहसे जा रहा है कुछ मँज कुछ मोटरसाइकिल शेड के नीचे खड़े है इमारत में बहुत सारे ए_सी भी लगे हुए है जिनके आउटर बाहर खिड़कियोंसे देखे जा सकते है हम।

यह चायरंग चाय की दुकान का ठेला है जो की लाल रंग का है और एक बंदा खड़ा चाय बना रहा साथ में उसकी केतलियां भी रखी हुई हैं पीछे --

और पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल बहुत सारे लोग कतार में खड़े हुए मोटर साइकिलों में पेट्रोल डालवा रहे और एक रिक्शा साइकिल भी खड़ा हुआ है।

कुछ लोग स्कूटी पर मौजूद हैं और कुछ लोग मोटर साइकिलों पर मौजूद हैं और आदमी उनकी मोटर साइकिलों में पेट्रोल डालते हुए नजर आ रहा है यह नीले रंग का पेट्रोल पंप है।

उस अलमरत के ऊपर साइन बोर्ड सफ़ेद और लाल रंग के लगाये गये है जो की रास्ता है उसकी दीवार लाल रंग की विंडो से बनायी हुई है और एक बंदा उसके बाहर खड़ा हुआ है।

दलिया भी इसमे रखे हुए है और बहुत सी अर्शियाँ मौजूद है।

ये एक क्लासरूम की तस्वीर है क्लासरूम बिल्कुल ही खाली है जबकि बहुत सा--